सामने एक मंच जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट और टीचर खड़े हुए हैं एक सेंटा क्लॉथ भी है।

सेंटा क्लॉथ का रंग लाल कलर का है बहुत सारे फुग्गा भी हैं फुग्गा हरे रंग के सफ़ेद रंग के लाल रंग के भी हैं।

सामने एक आदमी बैठा हुआ है जिसके मुंह पे सफेद-सफेद कुछ कुछ क्रीम लगी हुई है नीले कलर का कुछ ओढ़ा हुआ है और पीछे खड़ा आदमी उसका फोटो खीं --

टेबल भी रखी हुई है कुर्सी भी रखी हुई है जो महिला बैठी है वो माक्स भी लगा के बैठ --

सामने एक बड़ा-सा घर है जहां जिसका रंग सफेद और नीले कलर का है और उसे पर फूल भी लटके हुए हैं।

स्टील की रेलिंग भी लगी हुई है जो एक बिल्डिंग है बिल्डिंग का कलर भी पीले कलर --

सामने एक मैदान है जहाँ हरे रंग के घास लगे हुए हैं।

सामने एक मैदान जहाँ पे बहुत सारे फिसल पट्टी रखे हुए --